जहां पर एक बड़ी मेज़ लगी हुई है आस पास में कुछ एम्प्लोयी बैठे हैं।

और एक दीवार पर प्रोजेक्ट चल रहा है।

और एक ने चश्मा भी लगाई हुई है।

मुझे इस तस्वीर के अंदर एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

कुछ पुस्तक दिखाई दे रही हैं और एक चेयर रखी है चेयर ऊपर--